लक्ष्मी किराना व जनरल स्टोर फोटो कॉपी --

ये कोई डैम लग रहा बरसात के मौसम में पानी भर जाता है तो जैसे डैम से पानी गेट खोला गया हो--

तो इसमें तीन चार गेट खुले हुए हैं पानी भी लग रहा है ऊपर से।

और कुर्सियां में तबले रखे हुए हैं और--

यहां पर फूलों की सजावट भी है गुलदस्ता वगैरह रखे हैं।

और पेंसिल वगैरह है पेन का डब्बा है।

एक ट्रैक्टर के पीछे गाय भी खड़ी है एक शटर बंद है।

खेलने काफी सारे हैं छोटे छोटे नजर आ रहे हैं।

नग मगरमच्छ की फोटो नजर आ रही है जिसमें की एक दो तीन चार मगरमच्छ लेटे हुएं है और कुछ --

काफी अच्छा नजरा नजर आ रहा एक तलाक एक बहुत बड़े तालाब में एक आदमी बैठा हुआ है फ़त्थर के ऊपर--

और आगे साइड एक छोटा सा पहाड़ नजर आ रहा है।

एक सामने साइड एक बाजू साइड पहाड़ नजर आ रहा है।

और पानी भी काफी हरा सा नजर आ रहा है।